वहाँ वहाँ जिसकी गेट है वो वो थोड़ा ब्लैक कलर की है उसको थोड़ा बढ़िया कलर दे रखा है और वहां पे हम स्कूल बस को खड़ा देख सकते हैं।

जिसमें हमने ग्लास का डोर भी नजर आ रहा है और नीचे की तरफ हमें कुछ दुकानें नजर आ रही हैं जिसमें शटर लगा हुआ है और साइड वाली दोनों दुकान खुली हैं जिनके ऊपर भी कुछ बोर्ड लगा हुआ --

अ शायद वो मोर के ऊपर बैठे हुए है वो भी सीमेंटेड पूरा बनाया गया है। उनका एक अ काफी प्यारा-सा डेकोरेट कर रखा है गोल्डन कलर के कोई गेट जैसा कुछ चीज है उससे उनको --

कुछ स्ट्रीट लाइटों को वहाँं पे पार्क में लगा हुआ देख सकते हैं। पेड़ भी नज़र आ रहे है यहाँं पे कुछ और भी और हम यहाँं पे एक स्टेचू को देख सकते है जो कि बिलकुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हैं एक शेड के --

और हम देख पा रहे हैं| एक फ़ास्ट फ़ूड के एक स्टाल को जोकि वहाँ पे हमें एक न्यू जग रखा हुआ नज़र आ रहा है जोकि रेड कलर का न्यू जग के उपर एक जग भी रखा हुआ है जिससे पानी पीया जाता है।

यहाँं पे हम देख सकते है अ यहाँं पे बोहोत सारे फ्राइड आइटम रखे हुए हैं और जैसे यहाँं पे समोसे और भी खाने पीने की चीज़े हैं जलेबियाँ हैं मीठी मीठी और --

एक ओर आदमी है जोकि उधर जाते हुए नजर आ रहा है दू-दू-स् दूसरी तरफ।

उसके सबसे ऊपर हम कुछ गैलरी सीमेंटेड देख सकते हैं और ठीक ऊपर हाँ शंकर जी की मूर्ति है।

एक बाइक वाला अ ओ पीछे बाइक वाले किसी लड़के को बैठा कर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है पीछे घोड़े पर बैठा एक स्टैचू हमें नजर आ रहा है।

जहाँ पे काफी ज्यादा डेकोरेशन किया गया है बैलून्स के थ्रू गोल वाले बैलून्स और लम्बे वाले बैलून्स के थ्रू कलरफुल बैलून्स है जैसे रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशंस है वहाँ पे काफी प्यारा व्यू दिखा रखा है।